जहाँ पे एक बोर्ड लगा है डार्जिलिंग हिमालयन रेलवे --

जहाँ पे हल्के फुलके सजवट की गयी है गुब्बारों से और लड़ियों से --

यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ जमीन पर बैठी हैं दिवार से सट कर |

जहाँ पे व्यायाम करने के लिए बहुत सारे यंत्र लगे हैं दीवारों पर कहीं-कहीं पे पंखे लगे हुए हैं।

जो की वी-मार्ट के हैं वहाँ पे बाहर की ओर बहुत सारे मोटर साइकिले भी रखी गयी हैं।

एक पेड़ भी लगा हुआ है जो की पत्थरो के बिच से ही उगा है |